हैं साथ ही वह ऊपर होल्ड किया हुआ दिख रहा है आस-पास में लाइट लगी दिख रही है।

सामने एक ऑटो रिक्शा दिख रहा है साथ ही में बगल में एक ऑटो रखा दिख रहा है ऑटो के पीछे कुछ कुर्सियां रखी दिख रही है।

आस-पास मे छोटी-छोटी दुकाने नजर आ रही है। दूर में आसमान साफ नजर आ रहा है।

सामने एक पंडाल नज़र आ रहा है जो की बहुत बहुत ही बड़ी जगह पे बनी हुई दिख रही है सामने एक लड़का खड़ा आ रहा है बगल में मोटर साइकिल खड़ी हुए दिख रही है।

सामने एक झरना बहता हुआ दिख रहा है झरना के आस-पास कई लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। आस-पास में बड़े-बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जिनमें छोटे-छोटे घांस और कुछ पौधे उगे दिखाई दे रहे हैं।

में पेड़ नज़र आ रहे हैं ऊपर लोहे की रॉड दिख रही है साथ ही ऊपर आसमान साफ़ नज़र आ रहा है।

सामने तीन मूर्तियाँ रखी दिखाई दे रही हैं नीचे एक दो बड़ी थाली रखी दिखाई दे रही है।